बहार एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुवा उस पे लिखा ऐ. एस. टी.एच. कंप्यूटर सेण्टर |

इस इमेज में मुझे दो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं एक बिल्डिंग दो मंजिल है उसके ऊपरी पट्टी पर लिखा हुआ है राजकीय पॉलीटेक्निक और नीचे के पट्टी पर --

म-म कपरवान मोटर्स वर्कशॉप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक कार रखी जो खुली हुई है एक कुप्पी रखी हुई दिखाई दे रही है।

स्कूटी दिखाई दे रही हैं मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही हैं सामने एक गेराज सा दिखाई दे रहा है उसपे लिखा है रूएल और समझ नहीं आ रहा और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।